हम देख सकते हैं पार्क है यहाँ स्विमिंग पूल जैसे बनाया हुआ झरना जैसा है।

स्पार्क्स के बूट का दुकान है यहाँ सड़क पे नजारा है यहाँ पे बैंक --

हीया चीमनी हेय एक खेत दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है यहां बादल लगे हुए है बहुत सुंदर है।

यह आस पास लोग स्टेशन पर आते जाते ट्रेन पकड़ते हैं यहाँ से --